जीम लगा रहा है जहा पर जिम की मशीन रखी हुई है कार्डियो कर रहा हैएक आदमी ब्लू कलर की शर्ट पहना हुआ है ग्रीन कलर का लोअर पहना हुआ है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी बस दिख रही हैऔर एक आदमी भी खड़ा हुआ है उस तरफ मुंडी करके बस के अंदर बहुत सारे लोग भी दिख रहे है।

यहाँ पर एक औरत अपने बच्चे को पकड़ के शायद ऊपर जा रही है और बच्चे ग्रीन कलर की टीशर्ट पहना हुआ है ऊपर एक पेड़ भी दिख रहा है और पीछे शायद एक घर भी बना हुआ है ऊपर थोडा कच्छा दिख रहा--

ये एक बाइक वाला ऑटो है ब्लू कॉलर का बाइक जो है येलो की दिख रही हैं पीछे खूब सारे मकान बने है और ये ऑटो जो आजकल नए ऑटो चल रहे वो है।

ये सड़क पे खड़े हुए है और पीछे खूब सारे ठेले नजर आ रहै है बाइके भी खड़ी हुई है।

आ ठंडा करने वाला और पीछे कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स भी रखी हुई है कॉफ़ी के एन्ड से वो दिख रहें है।

ये पूरी चीज की दुकान है हर हरे कॉलर का गेट भी लगा हुआ है और बहुत ज्यादा चीजे टंगे हुए है।

यहाँ एक जगह दिख रही है बाहर बहुत ज्यादा वाला बहुत अच्छा वाला सीन दिख रहा है पेड़ लगे हुए है खूब हरियाली दिक रहे है और नीचे जो टाइल्स लगे है वो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं।